एक ट्रे में दो कॉफी रखी हुई है और दो-तीन चम्मच भी रखे हुए हैं और सामने मसाला भी रखा हुआ हैं एक ट्रे में दो कप कॉफ़ी रखी--

सामने ईटा रखा हुआ है बहोत सारा आस पास पेड़ पौधे उगे हुए है एक बिल्डिंग का कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे उगे हुए है बहुत सारे मजदूर मिलकर काम कर रहै हैं।

रोड मे बहुत सारा पानी भरा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।

एक रोड में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और एक बस है की तस्वीर है और एक कार भी पानी मे तैर रहा है आस पास बहुत सारे लोग भी हैं।